ऊपर आसमान है और ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि एक पेड़ का झाड़ और पत्ते भी हमें दिख रहे हैं।

ये फोटो एक योगा ट्रेनिंग सेंटर का जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है।

जहां पर एक पाइप का जो पाइप का एक पंप लगा हुआ है।

कुछ फुटवियर्स ये सब मिलते हैं जिनका नाम है ब्रांड फैक्ट्री और इसके साइड में जो मॉल है उसका नाम है सिटी स्क्वायर ।

ये फोटो एक रास्ते का है हाईवे का है टू साइड का ये रास्ता है।

ये जो फोटो है ये एक जंगल का फोटो है जहाँ पर हम सामने से एक हिरन को देख सकते हैं जो कि।

और वो लोग इधर कलरिंग कर रहे हैं नीचे बहुत सारा सामान बिखराया हुआ पड़ा हुआ है।

लेफ्ट साइड पर औरत लोग बैठे हुए हैं सामने सभा पर कोई भाषण भी दे रहा है।

और उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बड़े लोग भी उधर प्रेजेंट हैं और।

ये फोटो एक ऑफिस का है जो कि पूरे तरह से खाली है।